मुझे यहाँ पर केरला होटल दिख रही है और कुछ यहाँ पे नॉन वेज खाना भी बनता है न्यू केरला होटल --